व्यक्ति है और ये घर उर है और इधर टावर उवर भी है और यहाँ पे देख सकते हैं बहुत सारा आदमी आया हुआ है और ये बहुत ही बढ़िया है और इधर कुछ --

देख सकते हैं राजेंद्र मिश्र विद्यालय सहरसा और ये सहरसा का है और यहाँ ईस.टी.डी. उन्नीस सौ अठहतर का लग रहा है और ये बहुत ही सुन्दर है और बहुत ही अच्छा लग रहा है और यहाँ पे साइकिल - ओईकील भी है और इधर कुछ देख सकते हैं।

और अन्दर में व्यू बहुत जबरदस्त लग रहा है और ये वाईट कलर का है चॉकलेटी का है ।

और ये बहुत ही सुन्दर लगा रहा है और ये काला कलर का है ग्रील गेट लगा----